ये एक मंदिर है मंदिर के ऊपर गुंबज बना है गुंबज में एक दो तीन चार पांच पांच लोटा दिखाई दे रहा है ऊपर और चार लोटा नीचे --

ये मैनपाट के तिब्बतीय मंदिर का फोटो है जहां मैं कई बार घूमने जा चुकी हूं ।

तथा यह बस स्टैंड की तरह प्रतीत हो रहा है जहां यात्री प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ये एक सब्जी दुकान है जहाँ फल और पत्ते गोभी बिक रहे है पत्ता गोभी हरा नहीं बल्कि सफ़ेद दिखाई दे रहा है और टमाटर लाला नहीं हरे दिखाई दे रहे हैं ।

ये एक ग्राम का हैंडपंप है। हैंडपंप के किनारे दो शौचालय भी बने हुए है जो जर -जर ईस्थिति में दिखाई दे रही है जिसे लोग प्रयोग नहीं करते है।

ये एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है जिसमें ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है उस ट्रेन की पट्टी में पिंक कलर की गाड़ी लगी हुई है।